जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक सुबह का समय है जैसे की मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ है जैसे कि मैं देख कर यहां पर एक बहुत बड़ा सा घर है जैसे की--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हैं और बच्चे भी खड़े जैसा कि मैं देख पा रही हूं नद --

मूर्ति है जैसा कि मैं देख पा रही हूं दुर्गा माता के बाएं साइड में सरस्वती है और दाएं साइड में लक्ष्मी --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस द अअ दुकान दिवार के वॉल का रंग सफेद जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान के गेट का रंग लाल रंग का --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ दुकान के बगल में और छोटे-छोटे से दुकान बने हुए हैं जैसे की मैं देख पा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर सामने में बहुत सारी बाइक लगी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां आमने सामने।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

जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग है एक लोग साइकल ठीक कर रहे है और एक लोग हवा मार रहे है ।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस घर के ऊपर में नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है परिवान कल्याण संसथा --

जैसे की मैं देख पा रही हूं इस दुकान में लाइट लगे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही हूं सामने से एक लोग फूल बेच रहे जैसे की मैं देख पा रही हूं नीचे में --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत बड़ा सा शोरूम है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां ऊपर में एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक दुकान है जैसा कि मैं देख पा रही यहां पर कप प्लेट डेस्क सब रखे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे तरह तरह के कप र--

के हुए है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिन्होंने सफ़ेद रंग का टीशर्ट और काला रंग का पैंट पहना है जैसा की मैं देख पा रही हूँ उधर एक लोग बैठे है जिन्होंने नीला रंग का शर्ट और काले रंग के पैंट पहने हुए है ।

और उसने सफेद टोपी लगाई हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं मंदिर के बाहर एक दान पेटी रखी हुई है जैसे की --

की मैं देख पा रही हूँ एक लोग चाय बना रहे है जैसा की मैं देख पा रही हूँ एक लोग चाय पी रहे है जैसा की मैं देख पा रही हूँ दो लोग चाय में देख रहे है और मोबाइल देख रहे है जैसा की मैं देख --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक सुबह का समय है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बहुत बड़ा सा दुकान है जैसा कि देख --

पीला रंग का शर्ट और काला रंग का जींस पहना हुआ है जैसा कि मैं देख पा रही हूं दुकान में घुसते ही सीढ़ी बनी --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बहुत बड़ा सा मैदान है जैसे कि मैं देख पा रही हूं नीचे दो बॉक्स रखे हुए हैं जैसे कि मैं देख--

यह हॉल रूम पूरा खाली है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इसमें हॉल रूम के दीवार का रंग गुलाबी रंग का जैसे कि मैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जिस से साइकल ठीक किए जाते हैं

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर चेयर लगे हुए है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर टेबल लगे हुए है जैसा की मैं देख पा रही हूँ की इस टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ --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

दरवाजे का रंग नीला रंग का है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहां सामने में एक ग्रील बनी हुई है ।